यहां रैक दिख रहा है रैक के अंदर भी कॉपी किताब रखा हुआ है।

कार के दो दरवाजे दिख रहे हैं वो उसमें एक रेड कलर का रिबन लगा हुआ है।

यहां पे एक फैन दिख रहा है बगल में एक स्विच बोर्ड दिख रहा है।

यहां पे कुछ कीचड़ भी दिख रहे है बगल में कुछ मिट्टी दिख रही है।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

ऊपर में एक फैन दिख रहा है यहां पर एक फ्रीजर रखा हुआ है जो व्हाइट कलर के है।

यहां पे एक हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा है हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे बेड दिख रहे हैं बेड के ऊपर ब्लू कलर कपड़ा बिछाया गया है।

यहां पे बेड के ऊपर एक कॉपी दिख रहा है यहां पे बगल में एक आदमी खड़ा दिख रहा है जो की पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है बगल में एक महिला है जो मास्क पहने हुई है ऊपर एक फैन दिख--

यहां पे एक मार्केट का दृश्य दिख रहा है मार्केट के अंदर एक चटाई का दृश्य दिख रहा है जो ब्लू कलर का है।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

यहां पे कुछ बॉक्स रखा हुआ है ऊपर में एक लाइट जल रहा है।

हॉस्पिटल के अंदर एक रूम का दृश्य दिख रहा है रूम के अंदर दो बेड दिख रहे हैं बेड के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ सूता हुआ है।

यहां पे दीवार पे बहोत सारे चित्र बने हुए हैं कोई मिकी माउस का चित्र बना हुआ है कोई ड्रैगन का चित्र बना हुआ है।

ऊपर में एक पोस्टर लगा हुआ है उसके नीचे चार पुतले खड़े किए हुए हैं।

पीछे में एक दिल टाइप का गुब्बारा बना हुआ है जो रेड कलर का दिख रहा है।

यहां एक फंक्शन का दृश्य दिख रहा है फंक्शन के अंदर एक महिला का दृश्य दिख रहा--

यहां पे एक आदमी खड़ा है पीछे में डंबल रखा हुआ है।

यहां पे एक बेसिन दिख रहा है जिसके ऊपर नल लगा हुआ है बगल में दो बोतल दिख रहे हैं।

यहां पे एक स्कूल का दृश्य दिख रहा है स्कूल के अंदर ऊपर बहुत सारे खिड़की दिख रहे हैं।

रैक के ऊपर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं यहां पे एक लकड़ी रखा हुआ है जिसके बगल में एक केले का पेड़ दिख रहा है।

यहां पे एक जूता स्टैंड का दृश्य दिख रहा है जिसके अंदर बहोत सारे जूते हैं बाहर में बाइक लगा हुआ है साइकिल लगा हुआ दिख रहा है।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

पीछे में बहुत सारे रैक दिख रहे हैं के ऊपर डब्बे रखे हुए हैं।

वो यह बॉक्स टाइप का रखा हुआ है यहां पे तेल के यलो कलर के डब्बे रखे हुए है यहां पे कुछ बोरे दिख रहे हैं जो यलो कलर के हैं और कुछ लाल कलर के।

बगल में एक ऑरेंज कलर का कपड़ा ऊपर रखा हुआ है और कुछ हेलमेट रखे हुए हैं यहां एक पोस्टर लगा हुआ है।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

नीचे तीन चार कटोरी दिख रहा है बगल में ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है।

केक का कलर ब्लैक है एंड व्हाइट है उसके ऊपर पिंक वाला चॉकलेट बिछाया हुआ है यहां पे एक पिंक है और व्हाइट दिख रहा है।

यहां पर एक स्टेज का दृश्य दिख रहा है स्टेज के ऊपर एक कारपेंटर बिछाया हुआ है जो ऑरेंज कलर का है।

यहां पे एक चेयर रखा हुआ है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का गद्दा रखा हुआ है और उसके पीछे दो रेड कलर का तकिया दिख रहे हैं।